एक बिल्डिंग का दीवाल शीशे हरे शीशे का बना हुआ है।

य किसी की वर्कशॉप के अंदर की तस्वीर है। जिसमे कुछ लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे है।

जिसमें कुछ खिलाड़ी लाल रंग का कपड़ा पहन कर दौड़ लगा रहे हैं। कुछ खिलाड़ी अन्य रंगो के कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहे हैं।

और एक छोटी सी कटोरी भी रखी हुई है।